ये एक घर का रूम है और यह रूम को व्हाइट कलर से पेंट करके है।

और ये फ्लोर में मार्बल लगाके है और ये वॉल में कुछ फोटो चिपकाके दिखाई दे रहा है।

घर का अंदर में बहोत सारा चार और डम्बल लोग भी दिखाई दे रहा है।

टेबल के साइड साइड में चार बीयर आंख की दिखाई दे रहा है।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

यहां में बहुत सारा स्टूडेंट दिखाई दे रहा है बेंच पे बैठ के और डेस्क में बहुत सारा पेपर पेंसिल ओ सब रख के दिखाई दे रहा है।

राइट साइड में खिड़कियां दिखाई दे रहा है और ये खिड़कियां में पर्दा भी लगाके दिखाई दे रहा है।